केबल दिखाई दे रहा है ग्लास का सीलिंग दिखाई दे रहा है वहां पे सीलिंग लाइड --

एक बड़ा सा सेट दिखाई दे रहा है जो कि टीन से बना हुआ है एक रूम दिखाई दे रहा है।

स्टेज में ऊपर चढ़ने के लिए साइड में--

लोग चेयर लेकर बैठे हैं स्टेज के ऊपर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं।

सीटर का सोफा सेट है एंड अ दो सिंगल सीटर का सोफा सेट दिखाई दे रहा है।

एंड रूम पूरा टाइल्स दे के फ्लोर अ पॉलिश किया हुआ है।

एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज में चलने के लिए कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं बो--

एंड दूर में एक ओवर बीच दिखाई दे रहा है।

कुछ नीचे फूल दिखाई दे रहा है पिंक एंड वाइट कलर का फूल लगा हुआ है नीचे--

अ टेबल पर रखा अ अ गया है जैसे अनार है।

रूम दिखाई दे रहा है रूम में कुछ चेयर लगा हुआ है काउंटर दिखाई दे रहा--

कंस्ट्रक्शन फ्लोर ग्राउंड दिखाई दे रहा है ये क्रेन दिखाई दे रहा है कि--

बिल्डिंग दिखाई दे रहा है अ अ दो आदमी दिखाई दे रहा है।

फ्रेंड रस्सी कुछ ऊपर से हैंग किया हुआ है नीचे कुछ बुआ--

एक बड़ा सा कर्टन दिखाई दे रहा है बहुत--

पैर लगाया हुआ है सुंदर से अ रो करके फूल का पैर लगाया हुआ है कुछ --

अ फुल आए हैं एंड कुछ कुछ बड़ा बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

रूम दिखाई दे रहा है रूम में एक सोकेज दिखाई दे रहा है।

अ अ एक अ अ जेरोक्स मशीन एंड प्रिंट मशीन भी रखा हुआ है।

लोडिंग कर रहे हैं कुछ पूरा होल अ येलो एंड वाइट कलर का है जो कि बाहर में स्टैक करके रखा हुआ है।

एक साइन बोर्ड लगा हुआ है कुछ हाथ में बाहर में हॉल के बाहर--

लाइन से खड़े हुए हैं एक गा गाड़ी सामने दिखाई दे रहे हैं कुछ आदमी कुछ लड़का लोग अ अ एक ही कलर का ब्लैक कलर का स्पोर्टिंग --

कुछ टेबल दो-तीन टेबल है टेबल के ऊपर मॉनिटर रखा हुआ है साइड में बॉक्स रखे हुए हैं।

एंड कुछ चेयर भी रखा हुआ है चेयर के ऊपर अ अ टेबल का जैसे स्टैंड लगा हुआ है।

शैंपू दम गुटका के पैकेट लगाया हुआ है आदमी दो आदमी बाहर खड़ा है एक ब्लू कलर का डस्टबिन दिखाई दे रहा है।

सुंदर से गेट बनाया हुआ है अ अ मेरी गोल्फ के फ्लावर से--

ये अ खुला पूरा मैदान दिखाई दे रहा है तीन आदमी दिखाई दे रहा है एक ट्रेन दिखाई दे रहा है।

दिन से माटी खोन रहे हैं एक आदमी अ अ पीछे बैठा हुआ है।

एक टेबल डाइनिंग टेबल भी है एक टी टेबल भी है साइड पे।

अ अ माला लगा के ड्रेस पहन के खड़ा रहा है।

कुछ बाइक दिखाई दे रहा है एक लोहा का गेट दिखाई दे रहा है।

गाड़ी दिखाई दे रहा है गाड़ी का सामने का पार्ट पूरा खुला हुआ है ग्रेन से गाड़ी के मशीन सब ठीक निकाल रहा है एक आदमी --

एक अ अ बड़ा सा गड्डा दिखाई दे रहा है एक साइन वो--

बड़ा सा सोकेज दिखाई दे रहा है जो जो कि रैक में सब रैक में कुछ कुछ --

ऊपर में कप ए_टी_एम लिखा हुआ है ए_टी_एम का दरवाजा बंद है दरवाजे के चारी और ब्लू कलर ए--

एक लड़की दिखाई दे रहा है जो कि लहंगा पहने हुए हैं जूता पहनी हुए हैं।

पेंडल बनाया हुआ है पेंडल के चारों तरफ तीन से--

बाउंड्री दिया हुआ है एक स्कूटी साइड में खड़े हुए हैं।

आ आदमी कुछ महिला सब अ रु रुक के देख रहे हैं भीतर--

कॉस्मेटिक की दुकान दिखाई दे रहा है बहुत सारे--

तो बिल्डिंग दिखाई दे रहे है एक बिल्डिंग तो अ अ अ सुंदर से--

हिसा का बना हुआ है बाहर बाहर ही --

बहुत बड़ा बड़ा घर बिल्डिंग घर भी दिखाई दे रहा है।

एक दो पैर दिखाई दे रहा है जिसमें पत्ता नहीं है पूरा सु --

पत्ते ऐसे झुलाया हुआ है एक आदमी दिखाई दे रहा है स्टॉल के बाहर एक लाइट जला हुआ है।

एक क्लासरूम दिखाई दे रहा हैं। एक साइनबोर्ड दिखाई दे रहा हैं पिछे वॉल पे --

अ एक खिड़की दिखाई दे रहा है जो कि ग्लास का है खिड़की के बाहर कुछ पैर है।

क्लासरूम के भीतर डेक्स एंड टेबल दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा नदी है नदी में एक नाव लेके दो आदमी जा आ रहा है नाव के बीच में कुछ रखा है बहुत बड़ा --

दूर पे बहुत ब बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक सीमेंट रोलर दिखाई दे रहा है एक चेयर लाल रंग के चेयर दिखाई दे रहे हैं दूर पे ही एक पहाड़ दिखाई दे रहे।

नीला आकाश दिखाई दे रहा है एक आदमी खड़ा है।

ये सुंदर से सजाया हुआ है बाहर दुकान के बाहर तीन--

और पुतला रखा हुआ है एक महिला--

भीतर भी कुछ ली अ अ अ खरीद रहे हैं बाहर--

दो स्कूटी रखे हुए हैं दुकान के ऊपर ग्लोसरीन बोर्ड लगाया हुआ है।

एक नील रंग के लोहा का गेट लगाया--

एक पूरा खुला मैदान है दूर पे एक अ--

नील और एम म म सफेद रंग का--

और सामने कुछ दो लाइफ बोट्स दिखाई दे रहा है।

दूर पे लोहा का कुछ गेट दिखाई दे रहा है जो कि--

एक बड़ा सा गेट दिखा और पोस्टर दिखा दिखा रहा है।

लोहे के स्टैंड वो खड़ा करके रखा है।

एक सुंदर सा मूर्ति दिखाई दे रहा है जो कि कृष्णा का है हाथ में--

बासुरी लेके अ बैठा हुआ है।

एक टेबल के ऊपर रखा हुआ हैं सुंदर से है।

किताबें रखी है एंड चारों और किताब किताबों का रैक है रैक में सुंदर सी किताब रखे हुए हैं।

एक घर दिखाई दे रहा है जो की टीन से बने है।

एक बहुत बड़ा पैर दिखाई दे रहा है कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहा है घर के दरवाजे दिखाई दे रहा है।